उसकी बाहर में बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

पुल्ली लोहे की पाइप पूल सी भी पड़ी हुइ हैं।

और पीछे बहुत सारे लड़के है।

इसने मछली काट रखी है।

कोई कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ी पेंटिंग लग रही है।

और कुछ पंजाबी में कुछ लिख रहा है के बाहर।

साइड में एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं।

इस जिम में ऐ_सी लगी हुई है।

आंटी बैठी हुई है खुद चेयर पे।

इसमें बहुत सारी ए_सी रखी हुई हैं कुलर रखी हुई हैं।

और एक अंकल हैं वे रेड कलर की टीशर्ट पहन रखी है और एक अंकल है आंटी है।

और ऊपर फैन चल रही है और कुर्सी रखी हुई है एक।

बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं सामने टॉवर है।

पिजा पाजा मिलते लेस लिखा हुआ है इस पे।

एक ई रिक्शा भी है।

तीन नहर भी है पीछे।